एक लाल कलर की श शर्ट पहने हुए ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए वो दो उंगलियाँ दिखा रहा है त दद बहुत से लोग आदमी खड़े हुए हैं वो जिम कर रहे हैं।

इस गाँव की बहोत लंबा रोड है इस पर कुछ लोग जा रहे हैं। बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है इधर पेड़ भी खड़े हुए हैं इधर पीले कलर का गेट भी दिख रहे है और उधर आसमान भी दिख रहे हैं।

सफ़ेद कलर से पुता हुआ है।